ये एक टायर की दुकान हैं यहाँ पर बहोत ही अच्छे अच्छे टायर मिलते हैं।

ए रिजॉर्ट बहोत बहुत ही सुंदर बना हुआ है इसका जो ग्राउंड है बहोत ही सुंदर है।

ये एक एग्जाम सेंटर हैं जहां पर स्टूडेंट पेपर दे रहें हैं।

लोग घूम कर बहोत ही मस्ती करते हैं।

एक चेयर और टेबल भी पड़ा है रूम की दीवारें बहोत ही सुंदर हैं।

यहां पर एक वृक्ष भी नजर आ रहा है।

वृक्ष ही वृक्ष है जोकि हरे भरे है।

चर्च की पिक्चर है यहां पर यशु मसीह जी की फोटोज लगी हुई हैं।

यीशु मसीह जी की कबूल करते हैं।

कुत्ते बिस्किट की व बिस्किट खाते हैं कुत्तों के खेलने के लिए और कुत्तों के--

ये बैलून और लाइट्स बहौत ही सुंदर लग रही हैं।

बहोत ही सुंदर इसकी डेकोरेशन है।

यहां पर रात को शाम के टाइम ग्राउंड में--

जो टी शर्ट्स बच्चे और बड़े भी पहन सकते हैं।